बहोत से गाड़ी नजर आ रही है।

कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

जिस पर हरे कलर की छक्र बनी हुई है।

पीले रंग का है जिसका नाम ज्योतिष कॉलेज है।

पिक्चर्स लगे हुए हैं।

साथ ही दो बंदूक भी दिखाई दे रही है।

साथ ही कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं।

जींस टंगे हुए है टी शर्ट्स भी है।

और ऊपर सूरज है नीला आसमान है और कुछ बादल भी है।

कॉलेज पीले रंग से पुता हुआ है।

और एक टेबल है।

यहाँ बहुत सी कार खड़ी है।

बहुत सी लड़कियाँ डांस कर रही है।

पूरी तरह से सजा हुआ है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

ईंटे भी नजर आ रहे हैं रेता भी है।